एक और एक रीसेप्शन का नेम प्लेट रखा हुआ है।

इस गार्डन का एक गेट है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है।

यह फोटो एक वॉलपेपर शॉप की है जिसमे वॉलपेपर की कुछ सैम्पल रखे हुए है।

अलग-अलग डिजाइन के अलग-अलग कलर के व्हाइट --

इस फोटो में एक कार एक घर की फोटो है जिसमें ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है।

यह एक ग्राउन्ड की फोटो है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं।

मैबी इसमे एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है आर के हेयरिंग एण्ड सेंटर लिखा हुआ है।

दो ब्लैंकेट रखे हुए है इसमें एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है इस वॉल का कलर क्रिमिश कलर है वहां थैला रखा हुआ है।

ग्रीन कलर का और पीछे ब्लैक कलर में कुछ चीजें रखी हुई है और ये एक शॉप है।

अ फालतू का काम करवाते हमसे कुछ पंखे लगे हुए हैं जो दिकने में बहुत अच्छे हैं धन्यवाद।

अ इस फोटो में हाथ दिख रहा मुझे और दिख रही हैं।